यहां जो है उन लोग अह बांस की सीढ़ी भी रखी हुई है यहां साइड में।

ये एक म्हजिद का फ़ोटो है जिसमे यहां बहोत सारे लोग हैं जोकि उजले कलर का कुर्ता और पैजामा पहने हुए हैं।

यहां पे एक पंखे भी है जिसका रंग भूरा है।